यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रहे है।

सामने में एक बेंच भी दिखाई दे रहे हैं।

और इस रस्ता का साइड साइड में सोलर ये सब भी जला के रखा हुआ है।

दुर में टावर यह सभी दिखाई दे रहे--

एरोप्लेन के बाहर बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस घर के बाहर में बाइसाइकिल ये सब दिखाई दे रहे है।

इस घर का बाहर और अंदर में गाड़ी रखा हुआ है।

करने में कीबोर्ड और सी_पी_यू भी दिखाई दे रहे हैं।

और स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रही है।

और सामने में ये सब टंगा के रखा हुआ है।

यहां एक बाल काटने वाला दुकान दिखाई दे रहे हैं।

और सामने में बच्चा का एक फोटो भी चिपका के रखा हुआ है।

और पीछे में एक अलमीरा है। इस अलमीरा के अंदर बहुत सारा दारू का बोतल रखा हुआ है।

और अंदर में लाइट ये सब जल के दिख रहे हैं।

चर्च के ऊपर में एक बड़ा वाला क्रॉस बना के रखा हुआ है।

यहां एक घर के अंदर बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।